और कुछ स्कैनर्स रखे हुए है साइड में और कुछ पत्ते जैसे पौधे दिख रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

न्यू स्टैंड पे लगी हुईं हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो हरे कलर के है जिसमें कुछ फूल दिख रहा है जो येलो कलर के हैं।

और कुछ तार दिखाई दे रहे हैं जो काले कलर के हैं।

बहोत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है जो हरे कलर के हैं और कुछ तो तारे दिख रही है जो ब्लैक कलर की है।

और ग्रे कलर का पॅन्ट पहना हुआ है जो एक लोहे का कुछ बना हुआ है जिसको पकड़ा हुआ है।

इसमें कुछ छोटे छोटे लाइट जल रहे हैं जो वाइट कलर के हैं और कुछ सूखे बड़े बड़े घास दिख रहें जो मिट--

यहाँ पर एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा हैं इसमें बहोत सारे लड़के आदमी लोग दिखाई दे रहें हैं जो बैठे हुए हैं।

यहां पर अगर एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे बोरे रखे हुए हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं।

जो अलग अलग कलर के हैं और कुछ सामने में बोरे खुले हुए रखे हैं जो वाइट और पिंक कलर के--

और कुछ लाइटें दिख रही है जो सफेद कलर की है और कुछ दिए दिख रहे है।

और कुछ सामने में छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं जो हरे कलर के बहोत सारे छोटे छोटे चट्टानें हैं।

और कुछ सामने में शैंपू दिखाई दे रहे हैं और कुछ ठंडे तेल दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ सरफ के पैकेट दिखाई दे रहे है जो ब्ल्यू और व्हाइट कलर के है और एक कुछ दिख रहा है।

में कांच लगा हुआ है जिसके अंदर एक कागज चिपका हुआ है जो वाइट कलर का है और कुछ रूम जैसा अंदर में दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जो बहोत खूबसूरत लग रहा है इसमें लाइट दिख रहे हैं जो येलो कलर के है।

और एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जो आधा दिख रहा है जो रेड और ब्लू कलर का है और कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

यहां पर सामने में कुछ सूखे पेड़ दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पत्ते उगे हुए हैं जो सूखे हैं जो मिट्टी कलर के है।